कागज में लिख उसके पास अच्छा का मेडिसिन है।

ये एक जंगल है यहां पे हमें मट्टी का पहाड़ दिख रहे--

मोबाइ येल्लो कलर का ग्रीन कलर का रेड कलर का आ ब्लू कलर का --

मंदिर के बगल में सिरी है।

यहां पे हमें एक मट्टी कोड़ने बहोत बड़ा गाड़ी दिख रहे है।

पेड ही पेड़ है अब बगल में बहोत बडा बिल्डिंग भी है बैठने का जगह भी है।

और एक चट्टान पत्थर के बीच से--

अदमी लोग खाना बना रहे हैं अ यहां पे सब बैठके खा रहे--

ये ये एक शॉप है यहां पे हम देख रहे--

यहाँ पे हम देख रहे है छोटे से ले के हर साइज के --

ये एक खाने पीने का दुकान है जहां पर पे स्नेक मिलता है।